किसी कार्यक्रम का फोटो दिख रहा है जिनमे बच्चो ने हाथ मे कैंडल पकड़ी हुई दिख रही है पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिसने चादर ओढ़ के रखी हुई है उसके ऊपर पीले कलर का पर्दा उपर लेके चल रहे है चार डंडे लगे हुए दिख रहे है।

गेट खुला हुआ दिख रहा है । साइड में गुलाबी कलर के चार पाच खम्भे दिखाई दे रहे हैजिन में कपड़ा लगाया गया है।

ब्लैक से है चारो तो ब्लैक जलती हुई दिखाई दे रही है लोहै के पाईप दिखाई दे रहै है । सामने व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा हैँ जिसने हरे कलर की टोपी--

यह किसी स्कूल के प्रोग्राम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे एक स्टेज बना हुआ है जिस पे बच्चा खड़ा दिख रहा है । जिसके पीछे कुछ तिरंगा फुग्गा लगा दिख हुआ है । जिसमे ऑरेंज सफ़ेद हरा दिखाई दे रहा है । एक बच्चा साइड में खड़ा है जो काउंटर के पास खड़ा दिख रहा है ।